एक मकान दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

और उसमें लाइटे भी जुड़ी हुई है।

और होटल में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है एक जाली भी दिखाई दे रही है।

और कुछ लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

एक मेडिकल दिखाई दे रहा है कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और कुछ पोस्टर भी छपे हुए हैं और कुछ लाइटें भी जली हुई है।